यह एक दरवाजे खिड़कियों की चौखाट--

का गोदाम है यहां पर--

चित्र है यहां पर--

येह एक क्रियाना स्टोअर का--

पैकेट मिल जाते है इसका नाम ढाल किराना स्टोर है।